और-और पहाड़ के बीच में ही कुछ चीज का फैक्ट्री है है और अस एक फोटो के सामने एक आम का पेड़ है बहोत सुंदर ही बगान कुछ लगा हुआ है जो दिस इज बहुत सुन --

है जो की बहुत ही सुंदर लग रहा है और आसपास में हरे-भरे पेड़-पौधे हैं पौधे के बगल में ही गुफा है जो की बहुत ही अंधेरा लग रहा है ।

जोकि व्हाइट और नीले रंग का है यहां घर शायद मिट्टी का या फिर ईट का बना हुआ जो कि पेंट नहीं है घर के पास एक खंभा है उसके बिजली का खंभा है और--

एक रेलवे स्टेशन है जो कि बोहोत ही बड़ा लग रहा है। रेलवे स्टेशन के ऊपर ही एक बिजली का ही बोहोत ही बड़ा तार वगैरह है जो कि बोहोत ही डरावना लग रहा है। यह रेलवे स्टेशन बोहोत ही सुंदर यहां पे दो लोग चलते हुए दिखाई दे रहे --

यहाँ पे एक ऑफिस है ऑफिस में बहुत सारे कर्मचारीयाँ यहाँ पे काम के लिए आए हैं या फिर या फिर कुछ नौकरी के लिए आए होंगे।

इस जंगल में बहुत सारा जानवर वगैरा रहते हैं साँप वैगरह जहरीले-जहरीले जानवर वगैरा साँप --